जो संभवत गोपालगंज बिहार की है। इस बैंक के सामने काफी लोग पैसा निकालने के लिए खड़े या बैठे हैं। इनमे से ज्यादा तर महिलाएं हैं। इसमें एक एटीअम भी लगा है। जहाँ से नगद पैसा निकाल --

यह देखने से एलुमिनियम के बने --

यह एक मछली मार्केट लग रहा है।

इस में कई पिलर आधा बन चुके हैं और कई पिलर बाकी हैं।